पिक्चर हैं और पीछे पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि यह --

यह एक चित्र हैं जिसमें दिखाया गया हैं कि यह एक--

एक कैमरा है फैन है दो और एक गेटे --

आसमान भी है और इधर टेबल लगी हुई है।